गेट है और दिवाल है येलो कलर --

लड़की खड़े हैं और केक बुढ़ी औरत--

ब्लैक कलर कवर ग्रीन कलर --

नंबा दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारे मंदिर--

ये चर्च है उसमें बहुत सारा आदमी लेडीज खड़े हैं।

एक ठो मॉल दिख रहा है इसमें खिलौना--